मुझे इस चित्र में एक फैन्सी फैंसी चप्पल और शूज की दुकान दिखाई दे रही हैं।

और एक व्यक्ति बैठ कर सामान दे रहा है जोकि बहोत--

कुछ मजदूर उनको मसाला और ईंट पकड़ा रहा हैं।

और बगल में व्हाइट कलर की लाइट भी बहोत अच्छी जल रही है।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

मुझे इस चित्र मे एक ट्यूट्रॉल टंकी दिख रही है और ट्यूट्रॉल टंकी पर --

मुझे इस चित्र में एम_आर_एफ टायर की एक कंपनी दिख रही हैं।

खेती में जैसे कोई फसल उगी है।

सामने आसमान एकदम नीला दिखाई दे रहा है और--

के सीट के कपड़े बाहर हैंग किए गए हैं यहां पर--

मुझे इस चित्र में सैमसंग का एक केयर दिख रहा है और--

रुम का भी दिखा वह दिखाई दे रहा है और--

कुछ लोग अंदर हैं जो खिड़की से दिख रहे हैं।

सामने अंदर खिड़की के सोफा रखा गया है ओर--

जो एक मंच पर खड़े हैं पीछे लाल कलर का पर्दा लगा है।

मुझे इस चित्र में एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है और एक बहोत ही बड़ा मकान दिखाई दे रहा है।